यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे बच्चे को यहाँ पे बहुत सारे बच्चें है जो पढ़ रहे है एक बच्चे --

और यहाँ पे एक तराजू है।

यहाँ पे एक इस चीज का मूर्ति है ब बगल में बहुत सा --

यहाँ पर बहुत सारे बच्चें बैठ है कुर्सी है बच्चा बोटल लेकर बैठा है बगल में पेड़-पोधे है ।

ये बहुत सारे बन्दे है।